छवि में ढेर सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

ढेर सारे लोग हैं जिन्हों ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

ऊपर की छत पर लाइट्स लगी गई हैं लाइट्स का रंग सफेद है।

कमरे के अंदर ढेर सारे कुर्सियां है कुर्सियां सफेद रंग की है।

छवि में ढेर सारे बच्चे हैं जिन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

सड़क पर साइकिल है साइकिल पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है व्यक्ति ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

दुकान के दीवार के रैक पर कई तरह के डब्बे रखे गए हैं।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

में एक टेबल है टेबल भूरे और सफेद रंग का है।

अभी ये मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल काले रंग की है।

आगे में कूड़ेदान है कूड़ेदान नीले रंग का है।

छवि में ढेर सारे लोग हैं जिन्होंने रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए हैं।

अभी में एक मोटरसाइकिल खड़ी है मोटरसाइकिल का रंग काला है।

दुकान के अंदर एक टेबल है टेबल भूरे रंग का है।

यह छवि एक रेस्टोरेंट के अंदर का तस्वीर है।

यह छवि एक केक दुकान के अंदर का तस्वीर है।

छवि में पीले रंग का लाइट्स लगा हुआ है जो एक रेखा में लगाई हुई हैं।

आस पास लाल दुपट्टे लगाए हुए हैं।

छवि में ढ़ेर सारे फ्रिज और वाशिंग मशीन रखे हुए हैं जो सफेद काले और नीले और लाल रंग के हैं।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

छवि में दो बड़ी बड़ी वाहने खड़ी है वाहनों का रंग लाल और भूरे रंग का है।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

में बड़ी बड़ी ट्रैक्टर है ट्रैक्टर का रंग लाल है।

सीढ़ियां के पास रेलिंग है रेलिंग सफेद रंग का है।

कमरे के दीवार पर गुब्बारे चिपकाए हुए हैं।